ये एक एक बड़ा सा घर दिख रहा है आजुबाजु बड़ा बड़ासा मैदान दिख रहा है सामने कुछ कुत्ते बैठे हुए सामने खंबा भी दिख रहा खंबे पर दिख रहा है।

ये एक जंगल का एरिया दिख रहा जंगल के बीचो बिच सामने बड़ासा पहाड़ दिख रहा है और सड़क के बीचो बिच खंबा दिख रहा है।

और आजुबाजु झाड़ा दिख रहे है बड़े बड़े आसमान में बादल भी दिख रहा है लगता है पानी का मौसम दिख रहा है सामने बडासा पहाड़ दिख रहा है।

लगता है यहाँ पर किसी मंदिर का जलसा दिख रहा है यहाँ पर और शाम का टाईम दिख रहा है यहाँ पर बोहोत सारे लोग औरत जमा हुयी है मंदिर के सामने --

हॉटेल के सामने बोहोत सारा सामान दिख रहा है आप देख सकते है बोहोत सारा सामान दिख रहा है यहाँ पर.

और पीछे कुछ सर भी दिख रहा है ठहरा बाहर और बोहोत सारे कॉन्टेक्ट दिख रहे है यहाँ पर सामान दिख रहा है साथ दिख रहे है पीछे बैठे हुए दो तीन कुर्सी दिख रही है यहाँ पर।

ये कोई ऑफिस दिखती छोटी और छोटी मोटी ऑफीस दिखती है पता नहीं किस चीज़ की ऑफिस है यहाँ पर बोहोत सारे बोहोत सारे चीजा ररखी हुयी दिख रही है यहाँ पर.

और आजुबाजु बड़े बड़े झाड़ा दिख रहे है कुछ लोग यहाँ पर ठहरे हुए है और सामने एक ऑफिस दिख रही है शायद ऑफिस ऑफिस में झाड़ा दिख रहे है.

और यहाँ पर बोहोत सारे लोगा ठहरे हुए दिख रहे है फोटो दिख रही है यहाँ पर और आजुबाजु दुकाना दिख रहे है दो गाड़िया यहाँ पर ठहरे हुए दिखाई दे रहे है.

दो तीन लोग दिख रहे है यहाँ पर एक आदमी दिख रहा है बाहर बडासा हॉल दिख रहे यहाँ पर --

यहापर बच्चे दिख रहे है आजु बाजु कोई नहीं दिख रहा है चचा दिख रहे है जो अंदर जा रहे है ऑफिस के अंदर जा रहे है।

और आजु-बाजु बड़े-बड़े झाड़ा दिख रहे हैं और आजु-बाजु बड़े-बड़े झाड़ा दिख रहे है ऑफिस दिख रही है और ऑफिस के अंदर जाने के लिए दिख रहे हैं।

और सीढ़ियां भी दिख रहे हैं और आजु-बाजु घरां दिख रहे है और आजु-बाजु झाडां भी दिख रहे हैं बड़े-बड़े से और उस जगह और घर पर झंडा दिख रहा है।

ये मछवागार खाते है ये लोग बोहोत सारे मछलिया देख देख रहे है काले रंग के बोहोत सारे मछलिया दिख रहे है प्लेट में निकले गए है ये मछलिया।

इधर मॉल दिख रहां है आसपास देख सकते है यहाँ पर झोपड़ आसपास बहोत सारे तरकारी दिख रही है.

एक जिम दिख रहा है यहाँ पर बोहोत सारे लोग अपने बॉडी बिल्डिंग तथा बॉडी बॉडी बनाने के लिए आते है और बोहोत सारे ज जिम करने के लिए सामान दिख रहे सामान बोहोत सारे लगाए जिम के।

यह कोई रेस्टोरेंट दिख रहा है यहाँ पर बोहोत सारे लोगा यहाँ पर आये हुए है खा लंच करने के लिए बोहोत सारी भीड़ जमा हुयी है अंदर कोई लगता किसी को --

और लायटिंग भी डाली गयी है अंदर लायटिंग भी डाली गयी है अच्छा सा दिख रहा है बोहोत सा लोग आये है इस दुकान में.

जो की बड़ासा गोदाम दिख रहा है यहाँ पर आजुबाजु पेटिंग की गयी है दीवारोंके ऊपर ऊपर सामने रस्सिया भी दिख रही है और --

ऊपर लायटिंग भी दिख रही है गोले बड़े बड़े दिख रहे है और दीवार के ऊपर पेंटिंग की गयी है ऊपर अ बिल्डिंग बिल्डिंग का पार्टीशन मारा गया है।

बोहोत सारे आलू दिख रहे है खाना बनाना सब्जी बनाने के लिए काम आते है बोहोत सारे आलू है ये।

एक रेल्वे स्टेशन की फोटो दिख रही है यहाँ पर बोहोत सारी ट्रैन की पटरिया दिख रही है सामने दो तीन चार आदमी बैठे हुए है एक आदमी ठहरा हुआ है.

टेंट के बाहर एक आदमी ठहरा हुआ है और ऊपर ऊपर जाने के लिए भी रास्ता दिख रहा है.

ये किसी का बडासा घर दिख रहा है घर के बाहर एक आदमी दिख रहा है दो पायी पर बैठा बाजु घर के बाहर तीन तीन बाईका दिख रही है घर के आस पास --

निचे दुकान दिख रही है बाजुमें नारियल का झाड़ दिख रहा छोटासा और ऊपर खंबे के लंबे वायरा दिख रहे है।

ये एक दर्या दिख रहा है दर्या के आजुबाजु जंगल का एरिया दिख रहा आजुबाजु यहाँ झाड़ा दिख रहे बड़े बड़े और आजुबाजु घर भी दिख रहे है।

किसी शायद छोटी सी बैंक दिख रही है आजु-बाजु दुकाना दिख रहे हैं ऊपर बोर्ड ल बोर्ड लगाए दिख रहा है बाहर साइकिल दिख रही है बाजु में यहाँ झंडा भी दिख रहा है बा बाजु में दुकाना भी दिख रहे हैं।